मुझे यहां पर एक घर दिख रहा है जिसके आगे की तरफ मुझे--

मुझे यहां पर एक बहोत सी सुंदर सुंदर पर्वत दिख रहे है जिनके ऊपर मुझे आसमान बहोत ही अच्छा लग रहा--

बहोत बादल दिख रहे हैं जो की बहोत ही प्या--

दीवारों पर मुझे बहोत सुंदर सुंदर पोस्टर दिख रहे हैं और साइड में मुझे अलमीरा भी दिख रही है।

और मुझे यहा पॉट दिख रहे हैं जिसके--

यहां शायद सिलाते हैं कपड़े और मुझे इसके चारों तरफ बहुत से पोस्टर दिख रहे हैं।

ऊपर की तरफ श शटर्स दिख रहे हैं और साइड की तरह एक--

इलिये शायद और बाहर की तरफ को रोड लगा हुआ है ऊपर की तरफ को आसमान बहोत सुंदर लग रहा है।

बहुत ही प्यारी जो है ये बनाया हुआ है बहुत ही प्यारा बनाया हुआ ये।

जोकि बहोत ही प्यारा लग रहा है।

बहोत ही सुंदर सा नजारा दिख रहा है।

जोकि इलेक्ट्रिकल चीजों की शॉप है जहां पर बहोत सारी इलेक्ट्रिकल चीजे हैं।

नीचे की तरफ मुझे बहोत से सुंदर सुन्दर मैट बिछाये हुए दिख रहे हैं।

जिनपर मुझे बहोत ही हरे भरे पेड़ लगे दिख रहे हैं और चारो तरफ बहोत ही--

घर बने दिख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है कई प्रकार के कई रंगों की--

और चारों तरफ मुझे बहोत सारे घर दिख रहे हैं बहोत सारी दुकानें दिख रही है।

नीचे की तरफ मुझे एक दीवार बड़ी सी दिख रही है।